यह फूलों की गार्डन है यहाँ बहुत तरह-तरह के फूल लगाए गए हैं और लाइट भी लगे हुए हैं सामने बैठने की कुर्सियां भी है और बगल में घर बने हुए हैं आदमी भी है ।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठ कर --

यहाँ एक घर है । घर के गार्डन में व्हाइट कलर की गाड़ी रखे हुए हैं और बांस की चचरी से ग्राउंड किये गए हैं और बगल में लम्बी चौड़ी रोड है और सामने --

यह ब्रिज को ग्राउंड भी किए गए हैं ताकि समुद्र में कोई आदमी ना डूब जाए ।